यह एक पीला कलर का घर है और जो है दो मंजिल का है।

ये किताब का दुकान है जो की बहुत अच्छा-खासा लग रहा है और बहुत सुंदर सा है एक गाड़ी भी है।